बहोत सारे बाहर स्कूटी खड़ी है और--

कर्टन से सजाया गया है स्टेज को--

बोर्ड लगा हुआ हैं और बोर्ड पे--

बहुत सारी हरी-हरी घास है सामने --

हैऔर हॉल में नीचे मैट ग्रीन वाली --